इस फोटो के अंदर बहोत सारी भीड़ है कुछ साड़ियां पहनी हुई औरतें खड़ी हैं।

रेसिंग करने के लिए अलग अलग लोहे से बने हुए हैं।

ऊपर गहरा बादल छाया दिखाई दे रहा है।

यह लकड़ी की बेंच पड़ी है बेंच के नीचे कुछ स्टुल लगी हुई है।

बेंच के ऊपर कुछ स्टील के जग पड़े हैं सॉस के डिब्बे पड़े हैं छोटी-छोटी कटोरियां पड़ी हैं थालियां पड़ी है।

स्कूल बनी हुई है येलो कलर की। इधर एक दुकाने लगी हुई है।

यहां पर सामने कुछ कैरेट है येलो कलर के कैरेट के अंदर मछलियां भरी हुई है और नीचे एक टोकरी पड़ी है।

इस फोटो के अंदर सामने लिखा हुआ है राज देसर--

इधर एकअ दुकान है ओ बंद है सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया बैंक के ऊपर कोई चार्ट चिपके हुए हैं।

हुसूम नीचे बहुत सारी बाइक खड़ी है कुछ सफेद कलर की है तो कुछ ब्लैक कलर की है सामने कपड़ों की दुकान --

घरों के आगे कुछ सामान पड़ा है इधर सामने दीवार है दीवार के पीछे और भी कुछ घर बने हुए हैं।